ये यहां हमें कंप्यूटर का दुकान दिखाई दी रे।

तो वह सब मिलता है यहां में और यहाँ में एक ठो दुकान के सामने मे कुछ फोटो सब भी चिपका हुआ है।

बहुत ज्यादा चर्च का अंदर में टेबल सब है उसका बाद ऊपर और नीचे में एक ठु अम दर दरवाजा भी है।

नीचे कलर काला काला चेयर सब भी रख--

और यहां में बहुत सारा ट्रेडिशनल ड्रेस और थोड़ा दिख रहा है।

वॉल वॉल सब भी है उसका वॉल कलर भी ब्लू ब्लू और व्हाइट कलर में है।

आदमी सब लड़का लड़का लोग भी खड़ा हो रहा है सब भी हो रहा है और उसके पास बिल्डिंग सभी है।

एक कलर ब्लू कलर भीड़ लगा हुआ है बिल्डिंग के सामने में--